एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और बाइक का कलर है रेड कलर ।

ये बहुत सारा कचरा गिरा हुआ है और एक कुत्ता है और ये दो कुत्ते हैं।

कलर का बाइक है और दो इंसान है जिन्होंने वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ--

ये एक स्टेज है और ऊपर में तीन इंसान है।

आस पास बहुत सारे गाछ है और सामने एक डस्टबिन भी है जिसका कलर ग्रीन है।

ये एक प्लांट शॉप है और यहां पे बहोत सारे प्लांट है छोटे छोटे प्लाट है।

बड़े बड़े गाछ भी है एक खजूर का गाछ भी है सामने--

यहां पे बेड़ा लगा हुआ है जिसके अंदर भी छोटे छोटे गाछ है।

और एक भी इसके ऊपर एक बिल्डिंग के ऊपर बहोत छोटे छोटे कांच हैं।

नीचे पानी भी है और आस पास बहोत सारे बड़े बड़े पौधे हैं।

घर का कलर लाइट ब्लू एंड व्हाइट में है।

दोनो इंसान ने कैप पहनी हुई है और सामने कुछ गिरा हुआ है।

छोटे छोटे गांच भी है घास भी है।

खीरा है टमाटर है नींबू है गाजर है बताऊं है मिर्चा है।